केश के डिज़ाइन अलग अलग बता रहा है।

ये एक स्कूल है। बहुत सुन्दर लग रहा है स्कूल । उसमे एक आदमी है मोटर सा --

और लक्ष्मी जी की भी है पूजा कर रहा है एक आदमी है और दुकान भी है कॉपी किताब के --

लाल भी कपडा चढ़ा हुआ है पीला भी है हरा भी है अगल बगल में गाछी भी है। घर भी है।